यहाँ पे झूले हैं | यहाँ पे पेड़ पौधे आपको हरियाली दिख रही है काफी सारी | खम्बे यहाँ पे आपको दिखेंगे |

ऊपर भी पहाड़ों मे भी काफी हरियालियां दिख रही है आपको पेड़-पौधे चमक रहे है।

में पेड़-पौधे दिख रहे हैं एक आदमी है एक गाय हैं एक आदमी ने --